यहां पर बोहोत घेरा बना हुआ है। लोहे का बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। छोटे-छोटे यहां पर --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसी गाँव का दृश्य है। यहाँ पर --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि रात का समय है। यहाँ पर --

और बोहोत सारे लोग सज धज कर यहां पर डांस कर रहे हैं। बोहोत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। बाहर कुछ लोग नजर आ --

अच्छा लग रहा है देखने में यहां का नजारा।

इस चित्र को देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक चर्च है।

बोहोत बड़ा नदी है और यहां पर व्हाइट कलर का बाउंड्री बनाया गया है।

घर के रूम का अंदर का दृश्य है यहाँ पर बहोत सारे परदे लगे हुए हैं जंगले पर।

देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई रूम का चित्र है।

यहां पर एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।